एक खेजड़ी दिखाई दे रही है एक बंदों है देखो सफेद कलर को शर्ट पहन रखयो है।

इक्क माईन बालाजी महाराज की मूर्ति है जो की बहुत ही सुंदर लाग रही है।

कलश पढ़ो दिखाई दे ररेहो है परात दिखाई दे रही है शंक दिखाई दे रो है और ऊपरे में ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई दे री है।